पिक्चर में काफी सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ है जैसे बिस्किट रखे हुए हैं रस्क दिखाई दे रहे हैं एक बोर्ड बना कर उसमें अलग-अलग खाने बनाए गए हैं खानो में और भी बल्ब रखे हुए हैं और भी खाने पाने का --

ऊपर एक और फेशियल है जो शहनाज हुसैन के ब्रांड का--